वह एक चित्र और इस चित्र में एक --

होटल्स राम पैलेस है और इसमें कई सारी कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं।

तबला है उनसे कुछ ही दूरी पर एक फूल की डिजाइन किए हुए रथ आ रहा है और इसमें कई सारे डिजाइंस किए गए हैं।

यहाँ एक चित्र और इस चित्र में एक --

यह रेस्टोरेंट का नाम सिया की रसोई है और इसमें कई सारे इसके बोर्ड में डिजाइन किए गए हैं और बहुत ही सुंदर आकृति की बनी हुई --

नीचे रखी गई हैं और कमरे में कई तरह की डिजाइन किए गए हैं और कुछ रैक भी बनाया गया है।

यह दरवाजे के ऊपर कई तरह की फूलों से सजाया गया है और इसके अंदर एक मैंरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

वस्तु रखी गई है और एक लोग के हाथ में एक बाँस का रखा गया है और वह बाँस से मार भी रहे हैं।

डबल जीरो टू नाइन शो हो रहा है।

बालिका पढ़ाई करती हुई दिखाई दे रही है जिसमें --

कई सारे अलग पत्थर की डिजाइंस किए गए हैं जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है और यह घर बिल्कुल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है।

समेत कई सारे डिजाइंस किए गए हैं इसपे कुछ ही दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वह सफेद रंग की शर्ट पहने हुए है।

लगाए गए हैं जिसमें एक लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है इसमें कई सारे लाइट्स और एक पंखे दिखाई दे रहे हैं जिसमें --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

पोस्टर चिपकाए गए हैं जिसमें कुछ कमरे दिखाई दे --

और सभी फलों को पेपर के ऊपर रखा गया है।

कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह झूले लोहे की बनी हुई है।